माथे पे एक बड़ा सा टीका लगा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर लाइट लगी दिखाई दे रही है पीछे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे --

यह मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है बस स्टेंड पर एक बस खड़ी दिखाई दे रही है बस के पीले की पट्टी यल्लो कलर की दिखाई दे रही है सामने एक बैठने के लिए दिखाई दे रहा है।

मुझे मॉल के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ठंडे की जरकन लटकी दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे एक एयर के अन्दर का दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे बहोत सारे खंडर के खंडर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर बलप लगे है दिखाई दे रहे है नीचे चार आदमी बेनमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं दो खाली खड़े हुए तो दो बेनमिंटन खलते हुए दिखाई दे रहे है वाइट कलर की --